और इस स्टोर में दो अदद फ्रीजर भी--

काफी ज्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं।

रॉयल पैलेस की है इस तस्वीर में--

एक दरवाजा खुला हुआ है।

इस नर्सरी में काफी ज्यादा छोटे छोटे पौधे--

उन चीजों में शैंपू साबुन भी--